दुकान में मुझे कुछ पैकेट आइटम्स दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक शॉप दिख रही हैं।

इसमें मुझे एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है।

शॉप में मुझे मेन स्विच भी दिख रहा है।

इसमें मुझे एक मस्जिद दिख रहा है।

मस्जिद के सामने दो खंबे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे फ्रेशर्स पार्टी का सीन दिख रहा है इसमें मुझे बहोत लोग --

ग्राउंड के उस पार पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक मंदिर दिख रही हैं।

इसमें मुझे एक ट्रेन दिख रही है।

इसके चारों ओर मुझे बिल्डिंग्स दिख रही हैं।

इसमें मुझे तीन-चार लोग बात करते हुए दिख रहे हैं।

ईसा मसीह लेते हुए दिख रहे हैं।

इसमें मुझे फर्नीचर राजू की शॉप दिख रही है।